और बहुत सारे पेड़ भी खड़े हुए है।

यहां कई सारे लैपटॉप भी रखे हैं।

यह बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है।

दीवार पे कुछ बहुत सारा लिखा हुआ है।

और यहां लड़कियां और लड़के प्रार्थना कर रहे हैं।

यह एक बड़ा पेट्रोल पंप है।

और यहां लाल कलर की पट्टी भी हो रही हैं और बिलु की--

और प्लास्टिक की नीली करेट भी रखी है।

यहां पे कई सारी मेजे भी रखी हुई है।

और पीछे दीवार भी है।

यह सड़क बनी हुई है।

ऊपर बिजली के तार खींचे हुए हैं।

और दिवारो पे हल्का हल्का नीला कलर हुआ है।

बहुत सारे खिलौने रखे हुए हैं।

कई दुकान है लोहे के जिन्ने भी है।

यहां पे बोर्ड पे सोलर लिखा हुआ है और बैटरी भी उतरे हुए हैं।

बिजली के खंभे भी खड़े हुए हैं।

रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं।

यहां पे मजदूर काम कर रहे हैं फावड़ा लेके।

बहुत सारे रंग बिरंगे माले टंगी हुई है।

और गाड़ी भी खड़ी है कुछ आदमी भी खड़े हुए हैं नीचे ईट बिछी हुई है।

यहां लकड़ी और लोहे की फिटिंग बनी हुई है।

यहां बहोत बड़ा ये पैरस बना हुआ है।

अलमारियों में कंसीड भी रखी हैं। कुछ बलब सलब भी रखे हुए हैं।